एक दुकान है बहुत बड़ी-सीसोफा नीचे गादी लगाई हुई है व्हाइट कलर की और बहुत सारे साड़ियाँं हैं।

एक छोटी सी दीवार है जिस पे एक ईंट का रखे हुए है।

एक बहुत बड़ा-सा होटल हैहोटल के--

बाहर साइड कुंडी लगाए हुए हैं झाड़ के और टेबल है टेबल पे कुर्सियां है।

पेज पे एक औरत है उसके बाजू में वो कुछ बना रही है ।

एक किराने की दुकान है दुकान के बाहर कुछ किराए के और--

टों सरड स्टोअर स्टोअर है शायद से स्टोअर ऐसा लिखा हुआ है चावल के कट्टे गेहूं के कट्टे ऐसे बाहर रखे हुए हैं।

एक होटल है बहुत बड़ा-सा होटल के अं-बाहर खुर्चियाँं है कुंडे है।

और कुछ गोल बना कर के औरत बैठे हुए और सारे आदमी लोग है जो पीछे हैं ।